यहा एक झील है यहा पे लोग घूम रहे है।

यह बहुत अच्छा स्टेज है। यहां पे लोग आ के बैठते हैं।

और यहा बिल्डिंग बहुत अच्छा हैं।

यह एक ए.टी.एम है यहां पे सभी तरह के लोग पैसा उठाने के लिए आते है और यहां उठा के ले जाते है और यहां बहुत अच्छा ए.टी.एम ये है यहां पर बहुत सुविधाएं हैं।